के अंदर बहोत सारे पंखे भी लग --

कभी जरुरत होगी तो इस दुकान में काफी --

हॉल हैं जो इस हॉल देखने मे बहुत ही सुन्दर है और --

काफी रंग- बिरंग के दिखाई दे रहे है। --

यहाँ पर बहुत बड़े मेले लगे हुए हैं । इस मेले में काफी सारी --

कुर्सियां भी लगी हुई है जो लोगो को आराम करने --

अजीब तरह का नजारा है इ ।

जो की देखने मे बोहोत ही सुन्दर है और यहां के --

यहाँ काफी सारी बिल्डिंग है।

आते होंगे और अपने पढ़ाई को पूरी भी करते होंगे।

काफी बड़े और काफी सारे संख्या में लोग भी हैं ।

दुकान का नजारा बहुत ही सुन्द --

आदमी भी आए है इस सामान को --

पहन के आए है और काफी सारे खुश लग रहे है और इसकी --

यह एक बोहोत ही खुबसुरत --

और यहाँ एक बड़े बड़ा सा चश्मा और --